और पूरा सजा दिए है और बहुत नाच रहे है बहुत अच्छे अच्छे उसको समझ भी नहीं पायेंगे की कैसे नाच रहे है।

और अ-अ-अ रंग भी लगाए है और बहुत-बहुत बढ़िया-बढ़िया ल रंग खिले है और घर भी है।